यह चित्र एक रेस्टोरेंट का है।

खिड़कियों पर परदे लगे दिख रहे हैं।

इस चित्र में हमें ब्लैक कलर के पर्दे--

ब्ल्यू कलर का पोस्टर दिखाई दे रहा है।

लटकते हुए दिखाई दे रहे।

जो की तरह तरह के कलरों से--

सजा हुआ दिख रहा है कुछ पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

सजी दजी दिखाई दे रही है।

आ रहा है जहां ऊपर दो कुलर --

दिखाई दे रही है उन बॉटल्स में--

दो लड़कियां दिखाई दे रही हैं जो कि एक लड़की कुछ--

लाल कलर की कुर्सियां रखी हुई है।